यह एक बहुत बड़ा हॉल है।

इसमें बहुत सारे आदमी और औरतें भी खड़ी हुई हैं।

और यहां पे टेल भी बीछ रही है और यहां पर जीने की पाइडी भी दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ी मंदिर है।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

और यहां पे दो सलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा कमरा है।

और यहां पे बहुत सारे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा पैलेस है जिसमें बहुत सारे आदमी भी खड़े हुए हैं।

और यहां पे एक एल_सी_डी भी लग रही है।

और यहां पे लाइट भी नजर आ रही है और दीवार पे फिरोजी कलर हो रहा है।

और यहां पे एक घर है जीसपे सफेद रंग हो रहा है।

और यहां पे बहुत सारी मशीने भी लग रही है।

और यहां पे बहुत सारे पेड़ पेड़ पौधे भी है।

और यहां पे लोहे की कुर्सियां भी बिछ रही है।

यह एक दुकान है जिसपे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और यहां पे एल_सी_डी भी लग रही है।